इस मैदान में दो टेंपो दिखाई दे रहा है जो पीला और ब्लैक कलर का है इस मैदान में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं।

जो एक रेड कलर का बोर्ड में लिखा दिखाई दे रहा है।

लाल कलर का कुर्सी दिखाई दे रहा है एक पंखा दिखाई दे रहा है।

जहां बहुत सारे फूल सजाए गए हैं।

यहां बहुत सारे रैक बनाए गए हैं।

इस रैक के अंदर साबुन निरामा तेल इत्यादि सब रखा गया है।

हाल में बहोत सारे बैलून सजाए गए हैं।

चामने बहुत सारे हरी भरी घास दिख रहे हैं।

जहां कुछ बनें हुए हैं।

यह बहुत बड़ा स्टील का गेट है सामने बहुत सारे व्हाइट कलर के बल्ब जले दिख रहे हैं।

बहुत सारे वाइट कलर का लाइट जल हुआ है।

सामने तीन झंडा दिखाई दे रहा है। पीला ब्लू और कलर का है।

उसके बगल में तीन लोग दिख रहे हैं।

एक में शेरवानी टांगा हुआ है एक में स्वेटर टांगा हुआ सामने एक लोग शेरवानी पहन के खड़े दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग कोई गिटार बजा रहे हैं।

यह एक सैलून का दृश्य है जहां दो बच्चे ब्लैक कलर के कुर्सी में बैठे हुए हैं।

सामने एक पर्दा लटका दिखाई दे रहा है।

जहां बहोत सारे बैलून दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सफेद कलर का पर्दा लिखाई दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारे खिड़की लगे हुए हैं जिसमें ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ है।

बगल में हरे भड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे फूल लगाया गया है।

सामने एक खंभा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे इंटा दिखाई दे रहा है।

जो एक बोर्ड पर लिखा दिख रहा है।